नजर आ रहे हैं। यहां छोटे छोटे दो मंदिर नजर आ रहे हैं। यहां बैनर नजर आ रहा है। अंधेरी रात नजर आ रही है।

ऊपर एक अह आसमान नजर आ रहा है यहां चर्च नजर आ रहा--

यहां पर एक स्टेट डाला हुआ है स्टेट के ऊपर अ नीचे सीढ़ियां लगाई हुई हैं ऊपर आसमान नजर आ रहा--

सजीवन लोक हॉस्पिटल न लिखा हुआ है यहां पर ए_सी नजर आ--

यहां पर एक रुम है। रुम के अन्दर जमीन में होल कर रहे हैं। यहां पर हथौड़ा रखा हुआ है लकड़ी रखी हुई--

यहां एक मंदिर नजर आ रही है मंदिर में कई सारे लोग नजर आ रहे हैं यहां पे।

एम उँ पांच सौ ठू सात सौ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक शॉप है। यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर एक आदमी सिर पर टोपी पहने हुए ठहरा हुआ है।

यहां पर एक पार्क है पार्क में सामने एक घर नजर आ रहा है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही--

फूल से भी डेकोरेट किया हुआ है यहां पे पर्दे टेंट डाला हुआ है।

यहाँ पर दरख्त नजर आ रहे है रोंड है रोड़ में घांस लगी हुई है यहाँ पर ऊपर आसमान नजर आ रा है पीछे साइड कई सारे टॉवर नजर --